इसपे एक व्यक्ति बना हुआ है और पंखे के चित्र बने हुए हैं।

बहुत सारी लाइट भी लगी हुई हैं जो सफेद रंग की हैं और पीछे बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे--

यहां एक पोस्टर बना हुआ है जिस पर गोल्डन डोर स्पा एंड सैलून लिखा हुआ--

एक चित्र भी बना हुआ है और ऊपर एक टीन का छप्पर बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे सोफे रखे हुए हैं जिनमें चार पैर लगे हुए हैं और हाथ रखने के लिए स्टैंड बने हुए हैं।

इसके ऊपर बहुत सारे सुवर बैठे हुए हैं जो गुलाबी रंग के हैं।

सी में दीवार बनी हुई है जो मिट्टी रंग की है।

यहां एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एन_आर_एम लिखा हुआ है।

यह मंदिर सफेद और लाल रंग का है और नीचे की ओर नारंगी रंग का है।

और सारे फूल वाले पेड़ भी लगे हुए हैं जिन पर फूल लगे हुए --

और इसके दोनों ओर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं।

यहां पास में ही पत्थर रखे हुए हैं और यहां सामने की ओर दो पोस्टर बने हुए हैं जो नीले रंग के हैं।

यहां एक स्कूटी भी रखी दिखाई दे रही है और यहां पानी की बोतल दिखाई दे रही हैं।